और काफी सारे घर भी हैं इस सड़क के किनारे और एक सामने बड़ा घर बना हुआ है साइड मे एक --

अ ये यस यह एक वाद्य यंत्र मतलब बजाने का और क्या बोलते है इसे मुझे नहीं मालूम मगर लोग बजाते देखा है और सुना भी है।

अ यह भी शायद कोई यस सामने हेलिकोप्टेर खड़ा हुआ है एंड आदमी एक आदमी जा रहा है जिसने रेड कलर का बेग लगाया है एंड --

अं यहाँ पर जो हो वो बहुत सारे शायद पंडित वगेरा जो होते है न संत वगेरा वो बैठे हुए है।

जो है और ये शायद जो बोलते है न बॉस वगेरा आई थिंक उसके बने हुए है और इसके पीछे एक महिला बैठी है शायद जिन्होंने फ्रोजी कलर के कपड़े--

जो पहले बना रखा है और बाकि किस चीज़ का बना रखा है ये तो मेंने मुझे नहीं मालूम और इसके नीचे कुछ ब्लू कलर का--

मै नहीं जानती इस लैंग्वेज को और एक महिला का जो है ना इस पर फोटो लग रहा है। शायद यह चुनाव वगेरा की --

और ये एक बच्ची है जो इस फिसल पट्टी से होकर आई है। अभी-अभी ऐसा लग रहा है और ये --